यह चित्र एक ऑफिस का है।

यहां पर दो लड़के फोटो खिंचवा रहे है।

यहां पर बहोत सारे लोग खाना खा रहे हैं।

यह चित्र एक कपड़ों की दुकान का है।

यह चित्र एक रास्ते पर खींचा गया है।